चित्र में धख रही इमेज एक रेस्टोरेंट को व्यक्त कर रही है।

ऐसा लग रहा है बच्चे चित्र या कुछ नई कलाकृति बना रहे हैं।

बिच पर एक कुर्सी डली है तथा चारो तरफ गुब्बारे लगे हुए हैं।

चित्र में किसी प्रभु को दर्शया गया है तथा उसकी पूजा की जा रही है।

और अपने पाप मिटाते हैं।

आस-पास पहाड़ दिख रहे हैं तथा नजारा सुंदर लग रहा है।

चित्र एक अवस्थी मोटर्स का है ज --

ईसाईओं की शादी हो रही है।

तथा उसके उपर रंग लगा हुवा है।

चित्र एक कार्यालय का है जो खंड विकास अधिकारी सुरमरपुर हमीरपुर का है।